ये एक जयाद लेडी सलून मेकअप स्टूडियो है।

इसमें एच_डी ब्राइडल मेकअप किया जाता है कांटेक्ट नंबर भी है इसमें।

ये एक सम आ बरफ का इलाका है यहां पे बरख्त पे खेल रहे लोग बोहोत सारे और बरफ पे गाड़ियां भी चला रहे हैं आजू-बाजू बोहोत सारे --

बैठने के लिए कुर्सी की भी सुविधा रखी गई है।

यह एक बड़ा जय मेला शिक्षा निकेतन है और यहां पर टेंथ प्लस टू लेवल्स है।